और इसके आस पास बहुत सारे पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं सिर्फ एक हरे रंग का पेड़ नजर आ रहा है।

एक एल_सी_डी लगाया गया है यहां पर और नीचे की तरफ सफेद रंग का फर्श बनाया गया है।

नीले रंग की या हरे रंग की एक बिल्डिंग नजर आ रही है जोकि पूरे कांच से बनी हुई है और कुछ सफेद फूलों के पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक कॉलेज को दिखाया गया है यह कॉलेज का अंदर का हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है एस_एम_एस मेडिकल कॉलेज ।

इस फोटो के अंदर एक गार्डनर एरिया नजर आ रहा है जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

जहां पर बहुत से लोग खड़े हैं कुछ बस में चढ़ रहे हैं कुछ बस से उतर रहे हैं और कुछ बाइके भी खड़ी हैं।

और बहुत लोग उसमें घूम रहे है पीछे की तरफ एक इमारत भी नजर आ रही है जो कि नई बन रही है।

इस फोटो में बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है जोकि काले रंग की है और इन पर बहुत सारे लोग बैठे हैं पीछे की तरफ --